जैसे की यहां बहोत सारे फोल्डिंग बेड --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

एक बहोत बड़ी फोटो है यहां पर बहोत --

पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है।